मोको वहाँ पर एक तस्वीर भी दिखाई ऊपर टावर भी दिखाई दे रहा है बो बहुत बड़ा टाबर दिखाई दे रहा बदल भी दिख रहे कले काले टाबर जाने का रास्ता।

और इस मकान में कुछ टीयू लाइटे भी बहुत ज्यादा जल रही हैं इसमें कुछ पंखे भी मुझे दिखाई दे रहे है और यहाँ पर बहुत सारी चैनिंग रखी हुई है जैसे बैठने के लिए मेहमान आ रहे हैं।